एक के हाथ मे मोबाइल भी है और ये जिम मे आके फोटो बना रिया है जिम के माइन बहुत सारी मशीना पड़ी है।

इक मायने एक पौधो भी दिख रहियो है और खंडर सी जगहा लाग रही है पुरानी है के केबा को मतलब अरे आगे तक गली है इक मायने बड़ी और बहुत बड़ी है।

ओ के डगु है भाई इक माय कोरी काउटर सा लागरिया है।